वहाँ लाइटे दिखाई दे रही है यहाँ पर दीपक आदि बने हुए है दिखाई दे रहे है तथा बोहोत सारे आदमी बैठे हुए दिखाई दे रहे खड़े हुए भी दिखाई दे रहे है।

दिखाई देयहाँ पर कुर्सियाँ भी लगी हुई कुर्सियाे पर आदमी बैठे हुए दिखाई दे रहे है रंग-बिरंगी अनेक प्रकार की गाड़ियाँ भी लगी हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर शटर भी लगी हुई दिखाई दे रही है ।